देखिए इस खेत में मजदूर की खेती खेती कर रही है बिजली के खम्भा है बहुत सारे हरे-हरे पौधा भी है उधर जिन्दा पहाड़ लग रहे है इधर तार के पेड़ है उधर भी तार का पेड़ है हरा पेड़ फिर उधर बिजली के खंभे भी है --

ऐ देखिये सुबह का नजारा यहाँ पे घर है। बहोत सारे पेड़ पोधे हैं । यहाँ पे एक चिड़ई एक टावर है पेड़ हैं फल का ऊपर बहोत आदमी भी है।